जैसा कि मैं देख पा रही हूँ एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा घर है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर गेट में बहुत सुंदर सा सजावट किए गये है ज--

देख पा रही हूँ यह एक कमरा है इस कमरे में बैलून लगे हुए है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ बैलून का रंग झंडे के रंग का है औ--

यहाँ पर हड़े भड़े पेड़ पौधे हैं और कुछ घास बी हैं --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर सामने में एक लड़का है जो नीला रंग का टी शर्ट पहना और काले रंग का पैंट।

सजाया गया है यह गोल्डन और बैगनी बैलून से सजाया गया है जैसा की मैं देख पा रही हूँ सामने दो औरत खड़ी है औरत --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

जैसे की में देख पा रही हूँ यहाँ एक दिन का समय है जैसे की में देख पा रही यहाँ पे किसी ने एक अमरुद पकड़ा हुआ है जैसे की में देख पा रही हूँ यहाँ पे छोटे-छोटे हल्दी के पेड़ लगे हुए है।

तीन टोटो लगी हुए हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां सामने में थोड़ा सा जगह है मैदान जैसा जैसा कि मैं देख पा रही हूं--

जीन्स पैंट दूसरा लोग का काला रंग का जैकेट और शायद वाइट रंग का पेंट पहना है जैसे कि पे मैं देख पा रही हूँ --

तीसरा लोग ने ऊं पीले रंग का जैकेट और पेंट पहना हुआ है जैसे बाकी चार लोग काले रंग की शर्ट और पेंट पहने हुए हैं ।

उम होटल में बहुत सारे रूम बने हुए हैं जैसा की मैं देख पा रही हूँ इस होटल मे फूलों से सजावट की गई है जैसे --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक व्हाइट रंग की बैसिन लगी हुई है जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगी हुई है।

बड़े पर यहाँ पर बहुत सारे चेयर रखे हुए है जैसे की मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर हर तरफ की लाइट लगाई गई है।

इस घर में दो पंखे बने हुए हैं जिसका रंग काला रंग का है जैसे कि मैं देख पा रही यहां पर--

पर्पल येलो बहुत रंग के स्कूटी रखे हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस रूम में बहुत सारे लाइट जल रहे हैं जिसका रंग सफेद रंग का है जैसे कि मैं देख पा रही हूं।

पारी ओ सामने में एक लाइट जल रही है जिसका रंग नीला रंग का है जैसे की मैं देख पा रही हूँ --

जैसे की मैं देख पा रही हूं यह एक सुबह का समय है जैसे की मैं देख पा रही हूं यहां पे सामने में एक रोड है जैसे की मैं देख पा रही हूं सामने रोड के सामने--

दोनों तरफ घर बनी हुई है जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक मंदिर है जैसा की मैं देख पा रही हूँ यह मंदिर तीन भागों में बटी हुई है जैसा की मैं देख पा रही हूँ --

यहां पर एक घर बनी हुई है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक स्कूल भी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं।

यहाँ पर एक बाइक में एक लोग और दो बच्ची बैठी हुई है जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक लोग खड़े है जो एक बच्ची की बैग लिए हुई है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहां पर कुछ स्कूटी भी है।

गेट का रंग कत्था रंग का है जैसे की मैं देख पा रही हूँ इस दुकान में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने में एक बोर्ड लगी हुई जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर खिड़की बनी हुई और खिड़की लकड़ी की बनी हुई जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पे बहोत सारे लोग है।